उनमें हरेक प्रकार के कपड़े रखे गए है। और यहां पे स्वेटर टांगा गया है। जर्सी टांगा गया है।

ये बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे शीशे दिखाई दे रहे हैं।

एक दरवाजे के ऊपर दो लाइट भी लगाया गया है।

बगल में बहुत सारा पेड़ है जिससे पेड़ का पत्ता हरा है।

यह एक दुकान का चित्र लिया गया है और दुकान के ऊपर एक पंखा भी टांगे गए हैं और यहां पे बहुत सारे लाइट लग रहे हैं रंग बिरंगी के।

दो टैंकर गाड़ी है और यहां पे दो केरान भी खड़ा किए गए हैं।

पेड़ का पत्ता का रंग हरा है और यहां पे एक बिल्डिंग भी है।

यहाँ पे यूनियन बैंक भी लिखा गया है और इनके सामने एक ए_सी भी लगाया गया है।

बगल में एक कुर्सी भी रखे गए हैं और यह बहुत सारा सजाया हुआ है।

दरवाजे के बगल में एक फोटो भी टांगे गए हैं।

यहाँ पे एक बक्सा का बनाया हुआ डब्बा भी बाहर मे खड़ा है।

मंडी के ऊपर लकड़ी का बनाया गया है जो कि बांस का लग रहा है।

एक खंबा भी है जो की खंभे पर तार खींचे गए है और इनके सामने पेड़ पौधे भी लगे हुए है जोकि पेड़ का रंग हला है।

यहा पे एक सामने टेसफार्मा भी लउक रहे है।

बगल बगल तार का हाता मारा गया है।

यहां पे बहुत सारे यामाहा गाड़ी लगा हुआ है जोकि हर कलर में उपलब्ध है लाल है।

यहां पे टैटू के बगल में एक स्कैनर भी रखा गया है।

पहाड़ में बहुत सारे रुक्ष वृक्ष लगे हुए हैं जो कि हरा कलर में दिखाई पड़ रहे हैं।

बगल में एक बोरा भी दिखाई दे रहा है।

यह एक टायर शोरूम का दृश्य लिया गया है जिनके सामने बहुत सारे टायर रखे गए हैं।

सामने विद्युत सॉकेट लगाए गए हैं।

ये एक शादी के पंडाल के दृश्य से लिए गए हैं जिनके नीचे में ग्रीन कलर का मैट बिछाया गया है।

एक डिब्बे के ऊपर पेड़ जैसा छपा गया है।

यहां पे बहुत सारा लाइट दिखाई दे रहा है।